-- देख सकते है यहाँ पे पार्क का नजारा दिखाया जा रहा है।

हरे -भरे घास और टाइल्स लगा है एक औरत देख रही है वहाँ पे बहुत अच्छा नजारा दिखाई दे रहा है।

यहाँ का नजारा ही कुछ अलग है भाई! बहुत ही बढ़िया है और ऊपर में घर भी दिखाई दे रहा है।

-- दिख रहा है अगल- बगल घास पेड़ पौधे हरियाली हरियाली नजर आ रहा है देखने में भी बहोत खूबसूरत--

यहाँ पे चार पाँच आदमी है जोकि काम कर रहे है और ईटा का दीवाल है सिरमिट से ईटा को जोड़ रहे हैं।

यहाँ पे पिलर भी दिखाया जा रहा है और एक आदमी रस्सी को ऊपर- नीचे कर रहा है बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही मस्त है।

दूर का नजारा देखे तो हरा -भरा बहुत ही अच्छा दिख रहा है बहुत ही सुंदर--

यहाँ पे नाव का नजारा दिख रहा है बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नो दस ग्यारह बारह चिड़िया भी उड़ रही है बारह चिड़िया हैं।

यहाँ पे देखा जा रहा है पिल्लर बहुत सारे एक दो तीन चार पाँच छै सात पिल्लर है और पानी का नजारा दिखाई दे रहा है दूर का--

दरवाजे दिख रहा है दिखने में भी मस्त लग रहा है बहोत ही अच्छा मस्त रूम है बहोत ही मस्त रूम है बहुत ही अच्छा रूम है बहुत ही मस्त --